यहां पर होंडा का बोर्ड है।

बहोत बड़ी हमे येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है ग्रे और व्हाईट कलर की।

यहां एक बाइक दिखाई दे रही है।

छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई है।

यहां हमें एक व्यक्ति फोन मे फोटो लेते हुए दिख रहा है।

जिससे वो कुछ पी रहा हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे बहोत सारे।

दीवार पर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है।

यहां एक पुराना सा घर दिख रहा है।

इसमें कुछ छत ब्लैक दिख रही है।

यहां पर बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।